और इस दुकान के अगर बगल कई सारे कांच वगैरा लगे हुए हैं और इस दुकान में कई सारे लोग पन्नी वगैरा खरीदने आते हैं।

ये एक सोफे लड़की के सोफे का चित्र दिखाया जा रहा है इस लड़की के सोफे में कई सारी मूर्ति वगैरह बनी हुई--

ये एक गाड़ी मिस्त्री की दुकान दिखाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मिस्त्री पूरी तोड़ फोड़ के नई इसमें नए सामान डाल रहा हैं। ये नयी गाड़ी बना रहा है।

और नच रही है और इस मोर के अगल बगल कई सारे बड़े-बड़े कंकड़ डरे हुए हैं और ये मोर अपने पंख पूरे फैलाये हुए है।

और एक - एक ब्यक्ति इस बॉल को खेल रहा है और इस - इस ग्राउन्ड के अगल - बगल कई सारी हरी - हरी छोटी - छोटी घास वगैरा लगी हुई है और उसी में सारे एक ब्यक्ति बॉल फेंक रहा --

ये एक गाड फादर का मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है और ये गाड फादर के मंदिर के अगल - बगल --

ये एक नदी का चित्र दिखाया जा रहा है इस नदी में कई सारे छोटे-छोटे पत्ते वगैरह डलें हुए है और इस नदी में दो जानवर --

ये एक डी.जे. का गाड़ी का चित्र दिखाई जा रहा इसमे लिखा है शर्मा औडियो ।